इधर मुझे छोटे छोटे घास भी दिखाई दे रहें हैं।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

मुझे दो सूखे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जिसमे वेलकम टू दिरांग ओज़ोंग लिखा हुआ है।

सामने मुझे बड़े बड़े पिलर दिखाई दे रही है।

उधर मुझे ऑरेंज दिखाई दे रही है बास्केट दिखाई दे रही है अंब्रेला दिखाई दे रही है और मुझे इधर एक औरत भी दिखाई दे रही है।